यहां पर पेड़ जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है साथ में--

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें फ्यूल स्टेशन दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है।

पीछे कुछ कपड़े के स्टैचू दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर कपड़ों की एक दुकान दिख रही है।

सामने व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ सूखी घास दिख रही है।

और ग्रीन कलर का यहां पर बा--

कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं।

वाटरफॉल दिखाई दे रहा है।

कुछ गमले दिख रहे हैं रेड कलर के--

साथ में पीछे की ओर--

और बड़े बड़े पेड़ देवदार के यहां पे दिखाई दे रहे है।

गेट में हमें ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।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

कुछ सामान भी दिख रहा है जैसे कि--

हल्की सी स्कूटी बाइक दिख रही है।

जो की रेड और ग्रीन कलर से बना रहे हैं।

यहां पर दिख रहा है पीछे की ओर --

साथ में येलो ग्रीन कलर के दो पत्थर पड़े हुए--

जिसके ऊपर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

पीछे की ओर बहुत सारी लाइट की ट्यूब्स दिख रही है।

सामने बलून जैसे कुछ दिखाई दे रहे--